यहां पर पिंक और व्हाइट कलर के बॉक्स पर एक लड़की दिखाई दे रही है उड़ती हुई।

क्या यहां पर गोल कॉलर की शॉप में दही भला लिखा हुआ है और बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है जिसमें बहुत सारी कॉपी किताबे पेन रबर ग्लूकम बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

इधर दो नेक पीस दिखाई दे रहे है और यहां पर बड़े और छोटे अक्षरों में कश्मीरी ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

जिन पर कुछ बोर्ड लगे हुए है जिन पर लिखा है जीवन ज्योति नशा मुक्ति आश्रम।

और बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनमें से एक महिला है पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर कुछ लिख--

और यहां पर मोबाइल के बहोत सारे बॉक्स रखे हुए हैं।

जिन में रेडमी फाइव ए रियलमी और बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के मोबाइल हैं यहां पर कुछ मोबाइल कवर --

और बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

और यहां पर एक ब्लैक कलर की शीशी रखी हुई है जिसप व्हाइट और ग्रीन कलर की चिट लगी हुई है।